लेका लेके आ या जा रहे हैं।

कुंड बना रखा है उसमें पानी भरा हुआ है लोहे के तसले पड़े हैं छोटी छोटी पजरी पड़ी हैं।